पेप्सी आदि चीज़ें वहां से हम खरीद सकते हैं ।

मंदिर बोहोत ही अच्छा बना हुआ है ।

जैसे की हम आसानी से --

और हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह --

इनमे रंग बिरंगे फुल लगे उ-रु --

आज कल लोग इतने आलसी हो गए हैं।

और सारी की सारी औरतें पानी में खड़ी होकर --

इस फोटो में एक हॅान --

तो इस हॉल में बैठा कल आराम से --